फिर भी घास फूस लगी दिखाई दे रही है सा दिन का समय दिखाई--

इधर गाड़ी मोटर आती जाती दिखाई दे रहे हैं सामने की इधर--

आजू-बाजू सामने एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है दूसरे जगह पंखा लगा दिखाई दे रहा आगे की दिखा --

सामने को किसी बैंक दिखाई दे रही है --

मुझे इस फोटो में सामने की हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

फर्श बनाये गए सामने कि ओर नीला आसमान दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर के बादल आदल बने हुए दिखाई दे रहे--

इधर बल्लियां लगाई गई है ऊपर बहोत टीने दिखाई दे रही है सामने को खाली बना हुआ दिखाई दे रहा इसके साथ बल्ले लगा --

मुझे इस फोटो में फैमिली को--

दो से तीन इंसान खड़े दिखाई दे रहे हैं दिवालें पूरी तरह से पुती हुई दिखाई दे रही हैं दिन का समय दिखाई दे रहा है सामने दो इंसान खड़े हुए दिखाई --

एक लंबा सा कपड़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा आयो दीवाल --

बारिश का मौसम बना हुआ दिखाई दे रहा बादल की भी दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर बदल बने--

इसीको खाली मैदान बनाया गया सामने वो पीले कलर की दिवाल विवाल पुती हुई दिखाई दे रही है।

रखी हुई दिखाई दे रहे है सामने दो पट्टी ओट्टी बनाई गयी है ऊपर की ओर ऐसा लगा पट्टी बनी हुई दिखाई दे रहीं है सामने की ओर --

एक बैनर लगा हुआ है एच_एच_ए_एच_टी_ओ_अल ।

जिस फोटो में सामने केवल एक खेल का मैदान बना हुआ दिखाई दे जिस खेल के मैदान में कई सारे इंसान खेलते खेलते दिखाई दे रहे हैं आज बल्कि की तारीख--

वीरे हैं वाइट आसमान दिखाई दे रहा सामने--

दिखाई दे रही है सामने की ओर दिखाई दे रही हैं।

लगी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर दिन का दिन का--

रखी हुई दिखाई दे रही है लैपटॉप कंप्यूटर --

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे चीजें रखी हुई दिखाई दे रही है सामने--